दो मंजीला ईमारत हमें दिखाई दे रही है।

यह पेट्रोल पंप हिंदुस्तान पैट्रोलियम नाम की कंपनी का है।

पिक्चर में हमें एक सरकारी दफ्तर दिखाया गया है।

तीन मंजिला ये इमारत है बाहर कुछ कारे पार्क --

यह पेट्रोल पंप हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी का है।

इस पार्लर का नाम करीमनगर डेयरी डिपार्टमेंट डेयरी पार्लर है।

इस सर्कल के मध्य में एक बालिका खड़ी है।

पेड़ पौधे एक वेयर हाउस नूमा सरंजना से ढके है।

सफेद रंग की एंबेसडर ब्रांड की कार भी खड़ी नजर आ रही है।

पेट्रोल पंप सड़क किनारे स्थित है पेट्रोल पंप मुख्यतः सड़क किनारे ही होते है।